इस पे लिखा हुआ है कि लॉन्ड्री लैब री केयर योर फैब्रिक --

आर सर्विसेज ट्वेंटी फोर ऑवर --

इसमें दिख रहा है कि एक ब्लैक कलर की कार रिपेयरिंग कर रहा हैं।

फोटो में हम देख पा रहे है कि ये एक बुक और टॉय शॉप है जिसमें बोहोत सारे --

बोहोत सारे वैरायटी के फ्लावर्स रखे हुए हैं।

मे एक टेबल पे ग्लास रखा गया है जिसमें ब्लू कलर का जूस है जो कि आधा भरा हुआ है।

और आगे एक छोटा गुफा भी है जिसमें रेड कलर का आरोमार्क लगा हुआ है।

फोटो में हम देख पा रहे है ये एक एस.बी.आई बैंक हैं।

जो की बहोत हरे भरे है आसमान बहोत ही सुन्दर लग रहा है जो की--

इस फोटो में हम देख पा रहे है की बहोत सारे लोग है एक तरफ मछली बेचने वाला है जो की मछ्छी बेच रहा है।

गुड्स ट्रैन है एक तरफ पैसेंजर ट्रैन है और दूसरी तरफ गुड्स ट्रैन है।

जिसमे लिखा हुआ है सेंट्रल स्टेडियम साउथ ईस्टर्न कोर्ट कोस्टल फ़ील्ड्स लिमिटेड --

ठीक तरह से साफ कर रहे है और इसमें बहोत वैरायटी वैरायटी के फिशेस भी हैं।

इस फोटो में हम देख पा रहे है की ये एक फैक्ट्री है जहाँ बहोत सारे कार खड़े हुए है।

बैड ब्राउन कलर की है।